हॉल पूरा अच्छे से भरा हुआ है फुटबॉल है कुर्सी है सब कुछ इसमें है।

यह एक अच्छा सा किराया दुकान हैं सारे सामान इसमें अच्छे से कुड़कुडे हैं बिस्किट हैं।